दुगो गाड़ी भी हैकोगाड़ी हैको--

मा ओरिजनल गाड़ी ने हैको इधर आदमी भी हैको बहुत सारा आदमी हैको ।

इधर तीनगो आदमी हेको आ और इधर अथी भी हेको।